इस इमेज में मुझे एक रूम दिख रहा है जो उपर में फैन चल रहा है लाइट दिख रहा है जो बोत रौशनी है ब कुछ लड़कियाँ नीचे बैठ --

ये इमेज मै एक ग्राउंड दिख रहा है जहाँ छो जो छोटे पेड़ हैं जिसकी छाया ग्राउंड में पड़ रही है छोटी बाउंड्री है एक वाइट कलर की एक घर है जिसमे --

टीने दिख रही है चादर दिख रही है दीवारे दिख रही है टीन की और और फर्श में फैला हुआ है।

यह इमेज में मुझे बैंक दिख रहा है जहाँ लोग लाइन लगाये हुए हैं और साइड में एक बाइक दिख रहा है एक ठेला भी खड़ा हुआ है ठेला गाड़ी भी खड़ा हुआ है।

ये इमेज में मुझे एक झील दिख रही है जिस जिसके साइड में ऊँची-ऊँची पहाड़े हैं छोटे-छोटे पेड़ हैं साइड में बड़े-बड़े पत --